ऊपर मे धागे तेरे हुए हैं लाइट बर रहे हैं चारों तरफ से टाइल्स बीछे हुए हैं।

और आदमी है पानियां है बालू है पत्थल है।

ये वाला चेयर लगे हुए हैं चम्मच है टेबल --

यह एक कंप्यूटर सीखाने वाला रूम है।

ढेर सारे पेड़ पौधे है उसके पीछे साइड भी एक घर है दरवाजे है और--

बहुत बरा टेबल है लड़की जेंट्स लेडिस है ।

बहोत बरा बरा मछली है नीचे टाइल्स बिछे हुए हैं।

बहुत बड़ा हॉल है टेबल है सारा ढेरे आदमी है।

झंडे फहराने वाला चबूतरा है पेड़ पौधे हैं स्कूल है घर है बस है।

ढेर सारे आदमी बैठे हैं जेंट्स लोग चेयर लगे हैं।

एक बक्सा है एक स्टेशन नंबर टू है और नीचे टाइल से बना हुआ स्टेशन है लाइट --

घर है छत ढाला हुआ घर ऊपर में तार है।

एक खम्भे हैं एक नदी के नदी के में आदमी है।

क्रीम पाउडर है और साबुन है तेल है और नीचे मे बीस--

यह बाल्टी है कूड़ेदानी है।

और प्लाई से बने डिकी में उसके अंदर सब पेन पेन्सिल सजा के रखा हुआ है।

एक कलर में कलर पेंट किया हुआ है।

एक होटल ढाबा है उसके ऊपर लिखा हुआ है मिश्रा जी का पंजाबी ढाबा।

दरवाजे हैं बहुत लड़कियां लेडीज बैठ के यहां योगा कर रहे हैं।

दीवार में चित्र सब छापा हुआ है वर्ड लिखा हुआ है।